आ कानो में ईयर फ़ोन लगा हुआ है।

अ हरे और सफेद रंग की जलियाँ लगी हुई हैं।

इमेज में अ एक वाइट वाश-बेसिन लगा हुआ है।

आ पीछे की तरफ बड़े-बड़े पेड़ लगे हैं |

गार्डन में बड़े-बड़े पेड़ लगे हुए हैं। कुछ गाड़ियाँ भी खड़ी हुई है। एक लड़का खड़ा है। अ बैग टाँगे हुए है।

आ घर की दिवार पर कुछ लिखा हुआ है। एक ओतला बना हुआ है।

आ किले की दीवारों पर अ कला कृतियाँ की हुई हैं गुम्बज बने हुए हैं।

इमेज में बड़े-बड़े पेड़ नजर आ रहे हैं | आ पेड़ पर हरे रंग की पत्तियाँ लगी हुई हैं | कुछ दूरी पर एक किला दिख रहा है।

इमेज में एक पार्क में एक्सरसाइज मशीन लगी हुई है।

इमेज में पुराने जमाने के अ किलों के अवशेष दिख रहे हैं।

इमेज में किला बना हुआ है | आ किला लाल और सफेद कलर का है।

कुछ आ कुछ में गोल छेद किये हुए हैं | आ धुल और मिट्टी है |

इमेज में एक बड़ी-सी बिल्डिंग नजर आ रही है। अ बिल्डिंग पर ब्लू कलर का बोर्ड लगा हुआ है। कुछ बाइक्स खड़ी हुई हैं।